इधर एक छोटी पाणीसी नदी दिखाई दे रही हे बड़े बड़े झाड़ हे बहोत ही खुबसुरत ए दिखाई दे रहा हे हरे रंग के झाड़ हे लकडिया इधर पड़ी हुई हे आसमान दिख रहा हे|

एक शे शेड दिखाई दे रहा है एक करंट की वायर नजर आ रही हैं आसमान है बड़े-बड़े से झाड़ है बहोत ही पुराने जमाने की ये मंदिर लग रही है।

और एक बोर्ड पर ऐरावत बोलकर लिखा हुआ है ग्रे कलर पेंट किया गया है कुछ लोग इधर ग्रीन शर्ट पहना हुआ खड़ा हुआ हैं।